ये पार्क है यहाँ लाइट भी जलता है बिच में कुआ भी अधिक लोग भी है हरा-भरा पेड़-पौधा भी है फुल भी है।

ये पुराना जमाना का घर है यहाँ देखिए गाड़ी भी खड़ा है निचे देखिए घर भी है ऊपर आसमान भी है और इधर पेड़-पौधा भी है।

ये घर है इधर पानी दस पंद्रह ठो पट रहा है इधर बाइक भी खड़ा है के केबुल भी है ये लोग भी है पानी को छू रहे है।

बहुत ज्यादा भयानक पानी भी है गाव भी है और पानी जगह भी है अ अ आसमान भी है बहुत सारा ज्यादा आदमी भी आते है घूमने के लिए आओ आए--

ये स्कूल है यहाँ पड़ने आते है लोग यहाँ गुरु जी मेडम बहुत है बहुत बच्चे पड़ने आते है यहाँ मूर्ति भी है।

और वो उधर देखिये लोग लो आदमी भी है और आगे घर भी है कुर्सी भी है और बच्चे पढ़ने के लिए आते है घंटी भी है।

ये किराना दूकान है यहाँ तेल साबुन निरमा और तेल भी मिलता है।

ये ऑफिस है ये पीपल का पेड़ है उधर देखिये टेम्पू बहुत सारा है लोग उधर मकान भी है ऊपर आसमान भी है।

अब हरा-भरा टेम्पू केरम भी लिपाया है लोग बैठते है घूमने फिरने के लिए आते है आप आए और घूमने--

ये मंदि ये मंदिर है यहाँ आइए आते है पूजा पाठ करने और लोग भी बहुत सारे आते है इधर देखिए और पेड़-पौधा और लोग आप भी आये मन्नत पूरा हो जाएगी--

इधर देखिये अअअ खु खेल रे है ऊपर देखिए आसमान हरा दे भरा है छतरी भी है इधर पेड़-पौधा भी है आप भी आए अच्छा --

फुल भी दिख रहा है इधर बहुत सारा और पाइप भी लगा है गुलाबी भी फुल है आय --